उसे काफ़ी लोग खरीदना चाहते हैं इसे खरीद कर लोग खाते हैं और इसे मछली को शुभ --

दिक्कत हो सकती है और इससे हमारी जान को भी खतरा हो सक --

अम चार ऐं यहाँ पे बहोत सारे मिस्त्री हैं और जो मिस्त्री है लेबर है यहाँ पर काम कर रहे हैं। ईट और .--

और यहाँ का होटल जो बुक किया गया है ये काफी अच्छा होटल है और लोग का काफी आना-जाना यहाँ पर होता है।